एक कलर की व्हाइट कलर की और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट भी बैठी है।

मक्खन भी है जो की बहुत अच्छा दुकान है स्प्राइट बॉटल भी है।

ये तो ब बहुत ही बड़ी नदी दिख रही है हमे--

आप देख सकते है फैन हैंगिंग है झूमर देखिये कितने कितना क्लासि झूमर है और मेटिंग देखिये और पिलर्स देखिये पिंक कलर के कर्टेन्स देखिये ब्राउन कलर के कितना स्पेशल लुक आ रहा है।

ये देखिये अब कितनी सारी गाड़िया है यहाँ पर और ओरते जा रही है और चेयर्स भी है उधर ही आप देख सकते है।

ये देखिए आप यहा पर ये भगवान है इसका स्टेचू बना है मैने उसके स्क्रिप्ट भना है इसका आप ये देख सकते है इसको डेस्क पे रखा गया है।

यहा पर जो ये डोर हैं ये बंद हैं यहा पे जो स्ली लिंग हैं वो वाइट् कलर कि हैं।

ये एक कैफ़ेटेरिया है जहा पर चाये कॉफ़ी ब्रेड अवेलेबल है और चेयर लगी हुई है वहा पर एक रीसेप्सनिस्ट है ओनर है।

पेड़ भी है आप देख सकते है वहाँ पर एक लैडर भी है।

आप देखिए ये वगैरा है यहां पर प्रोवाइड करते हैं इसमें ग्रीन कलर है वाइट कलर है ऑरेंज कलर है अपनी अपनी लेवल आपने अपने शेख के पास दी गई है हम देख सकते हैं कि नीचे भी कितनी अच्छी लाइट्स है।

दिखिए यहा पे कुर्सिय सोफा कितना अच्छा हैं इसमें पिंक कलर का लगा हुआ है कवर।

फ्लोरींग भी वुडन अच्छी की गई है पिलर भी है व्हाइट ।

आप देख सकते है कितना अच्छा सोफ़ा है जिसमे कुशन्स रेड है ऑरेंज है।

और इसका जो टेबल है वो कितना ब्यूटीफुल है।

ये लो देख लीजिए आलू इसमें आलू को मर्ड लगा हुआ है ये राउंड सेपड है आईज है इसमें लगी हुई पोटैटो आईज जिनको हम केहते है।

ये एक स्केर शेप्ड भर्तन मे है।

बड़े बड़े पेड़ है दाए बाय और जो पेड़ उनका रुट है उनके आजू बाजू--

यहाँ पर ये बहुत सारे दुकान है जिसमे मेकप स्टूडियो है कैपिटल बेकरी ।

अब देखिये ये पिलर केसे सजाया गया है ग्रीनरी से इसकी जो सेलींग है वो भी ग्रीनरी से ही सजाई गयी है अब देखो--

हमे स्कार्पियो बहोत सारी गाड़िया चार पाच छे साथ आठ नो गाड़िया दिख रही है और--

आप देखिए हमें वायर्स दिख रही है हमें पाथ दिख रहा है हमें पॉट्स दिख रहे हैं जिनमें छोटे प्लांट्स लगे हुए--

ये तिन बन्दे जा रहे है अन्दर की और वहा पर ये अम्म ऑफिस है आप देख सकते है ये जो जमीन है ये बंजर बन गई है बिलकुल इसमें कुछ भी ग्रास नई है।

और एक पे साईकल पे एक पुरुष है एक महिला है अ ग्रीन कलर की साड़ी लगा के एक बच्चा है ये एक हम--